इस अस्पताल की छत में एक पंखा भी लगा हुआ है।

और सोफे के ऊपर पीले रंग का पेंट हो रहा है।

यह एक बहुत सुंदर पहाड़ है।

आउर नीचे टाइल भी लगी हुई है।

और साइड में बहुत सुंदर पर्दे भी है।

और दो मघ्घे भी लगे हुए हैं।

इन मग्गे में अमरूद वै आम का पेड़ लगा हुआ है।